यहाँ पर सैलून का दुकान है बहुत बढ़िया सैलून है जिससे हमरी सैलून को मेक-अप करते हैं मेक-अप और ऊपरी ऊपरी सभी प्रकार की आदमी आते हैं और सैलून करवा के घर जाते हैं।